पेंशन भी नहीं रहती पैसे वैसे चोरी वोरी होने के लिए।

ये एक मंदिर है। इसे इंग्लिश में हम टेम्पल बोलते हैं और हिन्दू लोग इसमें जाके पूजा करते हैं ओर भगवान से दुआ मांगते है।

ये बहोत ही दूध देती है। जिसे हम चोकर खल सानी और हम दूध या वो भी दे देते हैं।

ये दुकान है इसमें हमे नमक चिप्स --

यह मेडिकल है। हम इसमें दवाइयाँ लाते हैं। और दवाइयाँ बहोत ही लाभ पहूँचाती हैं। और हमें खासी या जुखाम --

जिस दुकान ही बहुत ही अच्छी है वही बहुत सफाई रहती --

ये बहोत ही अच्छा पढ़ाते हैं। जो भी इसके सर है या प्रिंसिपल हैं बहोत ही अच्छे --

तो ये दीखता नहीं है। बहुत ही अच्छा लगता है। नीचे मैंटे बिछ जाती हैं।

पचास की या चालीस की स्पीड से चल जाता है ये बहुत ही अच्छा है नहीं तेल की जरुरत होती --

पेट्रोल ओट्रोल की काएकी जरुरत नही होती। बस इसे चाहिए बैटरी का।

ये पानी है। ये नहरों में से आता है और ये तालाबों पे --

पौधा है और ये पहाड़ो पे से आता है। ये पानी बहोत ही अच्छा है। ये पानी बहोत ही वैसे बहोत सुन्दर है।

मोर है। मोर बोहोत ही अच्छा है। ये खेतो में मतलब रहते हैं। वैसे बोहोत ही अच्छे हैं।

और ये मोर वैसे सुन्दरता के लिए वैसे भी बोहोत ही अच्छे लगते हैं।

सुन्दरता के लिए वैसे बोहोत ही अच्छा है ये बेड मतलब ताकिये वोकिए भी हैं गर्दन ऊपर वूपर नी हो ताकि लगा लेते हैं।